जिसे धुआं निकल रहा है यहां बहुत आग जलाई गई है यहां पे एक सीढ़ी भी है जिसके सीढ़ी के साइड से रेलिंग बनाई है रैलिंग को लोहे के रोड से बनाई गई है।

यहाँ पे पहाड़ों के बीच मे मंदिर दिखाई दे रही है यहाँ पे मंदिर की छत दिखाई दे रही है छत के ऊपर नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है साथ ही छत के ऊपर दो लाईट भी लगी हुई है यहाँ पे एक लाईट पोस्ट भी बना ---

यहाँ पूरा जंगलो से घिरा हुआ है बहुत सारे पेड़ पोधे सुखी झाड़ियों से इसे घेरा गया है यहाँ पे एक घर है घर का रंग नीला है ऊपर में छत--

यहाँ बहुत सारी ईट पत्थर भी गिरे हुए लम्बे-लम्बे सीमेंट के पिलर पिरे गिरे हुए जो लाल रंग के दिखाये दे रहे है।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

भूरी रंग की जमीन यहाँ पे है यहाँ पे पेड़ों की परछाई नीचे दिखाई दे रही है मट्टी वाली मैदान है यहाँ पे धूल मट्टी---

सामने एक घर भी बना हुआ है घर बड़े तिंतल्ले का घर है।

यहाँ पे एक जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहें हैं यहाँ आसमान का रंग काला सफ़ेद पीला--

ये पुराने जमाने मे की गई है यहाँ पे बोहोत सारे पत्थरो के घर भी बने हुए है सामने एक पत्थरों का घर बना हुआ है जिसके ऊपर छत लगी हुई है।

यहां पे जो दिवारे है उस पे गु गुलाबी और ऑरेंज रंग से रंग की गई है।